यह एक प्यारा सा बहोत बड़ा गार्डन है। गार्डन के अंदर दो रोड --

मोटरसाइकिल पे भैयाजी हेलमेट लगाये एक लेडीज पीछे बैठी हुई है एक साइडग्लास दिख रहा है।

एक मस्जिद दिखाई दे रही है।